यहाँ पर बहुत सा मैदान डला हुआ हैं यहाँ बाईक पोस्ट भी लगा हुआ हैं यहाँ पे गाड़िया भी रखी हुईं हैं।

यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है जैसा की कोई स्कूल हो या कोई हो यहाँ पर बोहोत से भी खड़े हुए है यहाँ तक कि देख रहै है।

यहाँ पर भी बोहोत सी बसें रखी हुईइइ है यहाँ तक किइइइ बोहोत सी बस लगी हुई है वो व्हाइट कलर मे बस दिख रही है बोहोत सुन्दर बस दिख रही है एक का दो बलून निकल रहा है। दिख रहा यहाँ पे --

यहाँ पर भी बहुत से पुरुष महिलाएं भी खड़ी हुईं हैं कि जैसे कि कोई ऐ पूरी फैमिली हो की यहाँ पर फोटो खिचवा रहें हैं यहाँ पर बहुत जमेलन भी डला हुआ हैं।

बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं यहाँ पे जो की भी दिख रही हैं यहाँ पे के एक-एक जाल भी बिछा हुआ हैं यहाँ पर पेड़ भी देख रहे हैं बादल भी दिख रहे हैं यहाँ पर--